यहां पे बहोत अच्छे-अच्छे सामान मिलते हैं कुछ ऑफिस भी हैं यहां पे बहोत सारे लोग है जो कुछ शॉपिंग करने आए हैं कुछ वाॅक कर रहे हैं कुछ-कुछ खा रहे हैं कुछ घूम ड़े हैं।

ये पार्क है यहां पे एक ब्लैक कलर का फोर व्हीलर लगा हुआ है बहोत सारे ग्रीन प्लांट्स है।

और चाय दुकानदार जो है वह चाय बना रहा है एक डब्बा में बिस्किट भी रखा हुआ है।

ये एक डॉक्टर का चैंबर है वहां पे ऑरेंज कलर के कटेंस लगे हुए हैं।

पाइप लगा हुआ है नीचे मिट्टी है कुछ घर बने हुए हैं।